-- और जो पीछे जो है वो हरे-भरे रंग के अ पेड़ो को भी देख सकते है।

तस्वीर में हम देख सकते है की कई लोग खड़े हुए हैं और जो ऊपर लिखा हुआ है बॉम्बे बिरयानी हाउस ।

और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है नाइन फाइव सेवन टू नाइन सेवन थ्री सिक्स नाइन एट ।

और हम गाड़ियां देख सकते हैं और हमारा पेट देख सकते हैं और ऊपर जो है आसमान को देख सकते हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक कार खड़ी हुई है।

इस इमेज पे हम देख सकते है की एक ट्रैक्टर आ रही है और उधर एक बैनर पे लिखा है आर.पी. ज्वेलर्स ऐसा लिखा हुआ है।

तस्वीर में हम देख सकते है की बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो सब्जियाँ ले रहे हैं हम हरे रंग की सब्जियों को देख सकते है और आस-पास जो है हम हरे-भरे रंग के पेड़ों को भी देख सकते है।

इस तस्वीर में हम बहुत सी प्यारी सी सरकार है हुसैनी की जो दरगाह देख सकते हैं मस्जिद देख सकते है बहुत ही अच्छा सा हैं ये--

केला मोसम्बी सेब पपाया अनार और वॉटरमेलन हर एक रकम के फ्रूइट्स को हम देख सकते हैं ।